बहुत सारे आदमी यहाँ पे घुमने के लिए भी आये हुए है से कई तरह के लोग भी यहाँ पे पुजा करने के लिए आए हुए है।